एक लेडीज़ एक शॉप पे खड़ी हुई है।

अ जाली के अंदर एक शुतुरमुर्ग दिख रहा है।

यहाँ पर एक शोरूम दिख रहा है जिस पे लिखा है मा --

जो की लाल कलर से और सफ़ेद कलर से पोता हुआ है इस --

उसके अंदर एक लड़का लाल कलर की कुर्सी पे कान से फोन लगा के बैठा हुआ दिख रहा है।

कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं कुछ पेड़-पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

जिसपे लिखा हुआ है यू पी छे पांच बी बी सात तीन नो तीन | कार के पीछे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं | एक --

पर जिस पर उम्म सफेद अक्षरों से लिखा हुआ है रेस्टोरेंट ।

जाली वाली डिज़ाइन वाली एक कमरा दिख रहा है।